दुकान खोल कर और लोगों की दाढ़ी मोछ कटिंग --

देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई है और बहुत सूंदर प्रतिमा है जिसे महात्माओं --

ऊपर कुर्सी रखी हुई है और होशियार छात्रों की दीवार पर फोटो अंकित है।

इस वीडियो में सामने एक एक ईमारत दिख रही है ये महंगा है ईमारत |

एक है उस में लोग खेलते हैं खोखो कब्बडी इत्यादि और टहलते हैं |